और इसमें इंजन में दो पहिए साइड हैं। यहाँ पे डब्बों के रंग पीला रेड ग्रीन एंड ब्लैक --

हेलो गाइज ये एक बहोत अच्छा फोटो क्लिक किया गया है। इस फोटो में काफी आसपास के पेड़ है।

गाइज ये एक ए प्लेटों की दुकान है जहां प आपको सारे बर्तन मिल जाएंगे और बर्तन लेने के बाद आप अपने घर ले जाएंगे।